और लिंटर घुलाई का काम चल रहा है कुछ आदमी फावली से खींच रहे हैं कुछ आदमी फैला रहे हैं।

शायर ये एक कमरा है और कमरे में बेड पड़ा हुआ है।

यह एक दुकान दिखाई दे रही है और वह दुकान एस_पी स्टील्स की है।

कुछ मोटरसाइकल पर बैठे हुए हैं और बराबर में एक मोटासाकल खड़ी है।

उसके ऊपर एक हेलमेट रखा हुआ है और उसके बराबर में एक आदमी खड़ा हुआ है और कांधे पर ब्लैक कलर का--

यह सर एक दुकान दिखाई दे रही है और यह दुकान इलेक्ट्रिकल्स की है।

और सामने आदमी भी खड़े हुए हैं और उसके सामने दुकान के भंडारी जी --

और एक लेडिस के हाथ में साॅल है और--